और यहाँ पर एक ये आग लगी हुई है और यहाँ पर बॉटल रखी है यहाँ पर कुछ रखा हुआ है यहाँ एक लड़का बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर।

यहाँ पे ये मुर्गी जिसकी चोंच लाल है और यह ग्रीन और ब्लु सैड में है और यहाँ दौड़ लगा रही है और यहाँ बिल्ली मुर्गी काफी खतरनाक मुर्गी है जो की काफी जंगली मुर्गी है।

और यहाँ पे इसके दो टायर हैं और बाइक का इंजन इसका लुक बाइज़ में दिया है यहाँ एक बाल्टी पड़ी है और कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे पैकिंग किट पड़े हुए हैं। यहाँ सामने स्टेपनी पड़ी है टायर पड़े हैं।

छेद-छेद हो रहे हैं। हमम बिल्कुल और यहाँ पे काले-काले निशान पड़ रहे हैं आलू के अंदर ये आलू शायद ख़राब होने के उसमें हैं।

यहाँ पर ये लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। यहाँ ये लोग पैदल-पैदल ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ या जंगल के अंदर जा रहे हैं एक दो तीन चार पांच --

यह पानी हो रहा है यहां पे दो पेड़ लगे हुए है यहां सामने एक ऑरेंज कलर का लगा हुआ है और यहां पीछे भी एक पहाड़ है और यहां पे दो पेड़ लगे हुए है।

ये एक जलमुर्गी है जो कि दौड़ लगा रही है पानी के अंदर।